जाने की फोटो मजे आपते दिख्याणा लग्युं की यखम जी बहौत सारा आदमी खड़ा छन हुयां जोका पिछाड़ी बिटिन आपते भगवान् जी की मूर्ति ह्वोल दिख्याण लगीं जन की शिव जी की हनुमान जी की।

सरस्वती माता की यंका पिछड़ी बिटिन आपते पहाड़ी बोल दिख्याण लाग्यां जोकि बणाया गयन।